यह एक यहां पर बहोत सारी मूर्ति दिखाई दे रही है और यह ये यहां पास बोर्ड भी नजर आ रही है।

रेड कलर का फूल भी दिख रहा है।

र यहां व्हाईट कलर का बहोत सारी चेयर भी है।

यहां यहां दो तीन ठो बस नजर आ रहे हैं।

और यहाँ ऊपर में लोहे का --

ये आलू की पिया पियाज का दुकान है। जिसमें बोरी बोरी आलू पियाज रखाया गया है।

यह एक वैन बहोत सारा वैन नजर आ रहा है।

यहां एक स्कूल है जो की येलो कलर में है।